पंप पर मुझे वर्कर पेट्रोल डालते हुए दिखाई--

दुकान पर मुझे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

प्लेटफार्म पर मुझे कुछ लोग खड़े और कुछ बैठे नजर आ रहे हैं।

ग्राउंड पर मुझे एक लाइट लगी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर कुछ दुकान दिखाई दे रही है दुकान--

और मुझे सामने कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

सामने मुझे एक रेलगाड़ी दिखाई दे रही है।